कुछ घरों का रंग पिंक दिखाई दे रहा है जिसमें कि कुछ हरे-भरे पेड़-पौधे भी --

रेड कलर की मेज है। उसपे कॉफी अदर चीज रखी हुई है जिसमें एक लड़का जो है व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए --

कॉफी पीते हुए दिखाई दे रहे। उसके जेब में एक स्मार्ट फोन भी दिखाई --

महिला सफेद रंग की घर के आगे खड़ी है और गाय एक रस्सी में बंधा हुआ --

शंकर जी की और विष्णु जी की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं और जिसमें कुछ लोग हाथ जोड़े हुए मंदिर्स में --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक मार्केट दिखाई दे रहा है। मार्केट के अंदर कई सारी वस्तुएं --

बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ लोग समान खरीदने कुछ लोग समान को बेचते हुए नजर आ रहे --

यह एक रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन पे कई सारे लोग खड़े दिखाई --

रेलवे स्टेशन का रंग भूरा और हरा दिखाई दे रहा है। रेलवे स्टेशन के जस्ट ठीक ऊपर एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियाँ का रंग भी --

यह एक चित्र है और इस चित्र में पांच लोग दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि तीन लोग --

उनके पास एक दूल्हा और दुल्हन भी हैं जो एक दूसरे को रस्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं और --

इसमें एक कई सारे कार्टून को सजाया गया है। कार्टून के अंदर भी कई वस्तुएं रखी हुई --

तालाव के अंदर एक बड़ा-सा जहाज भी दिखाई दे रहा है। जहाज के पास एक लोग खड़े भी --

ऊपर की ओर धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कारखाने में कई सारी अलग प्रकार की लोहे की बनी हुई मशीनें भी दिखाई दे रही हैं। कारखाने के बा --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक विद्यालय दिखाई दे रहा है। विद्यालय का रंग पिंक --

यह एक तस्वीर है और इस तस्वीर में एक सफेद रंग की होटिल दिखाई दे रहा है। इस होटल --

पौधें भी लगाए हुए हैं और जिसमें --

यह एक तस्वीर है और इस तस्वीर में एक फिश मार्केट को दर्शाया --

जिसमें फोम पे एक बड़ी-सी मछलियां दिखाई दे रहा है। मछलियां का रंग गुलाबी औ --

और इस सुधा मिल्क पर लड़का रंग सफेद और लाल है दिखाई दे रहा --

विद्यालय के बाहर एक सुंदर-सी गार्डेन है। गार्डेन में कई प्रकार के पौधें लगे हुए हैं जिसमें की कुछ पौधे गमलों में --

पूल की भी है और कई प्रकार की अलग --

पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं। हरे सरक से कुछ ही दूरी पे कुछ नदी में पानी जैसा गंदगी भी परा हुआ --

जिसमें कि एक कारीगर साइड में रंग करते हुए और दूसरा कारीगर सीढ़ी को पकड़े हुए --

कई सारे फूलों से सजाया हुआ है। उनके पास में एक दान पित्र करके एक पेटी भी है। उनके आगे एक --

रोड की साइड में खरा है। रोड की आसपास जो एरिया है वो छोटी-मोटी घासों से भरी हुई है।

पुल का रंग सफेद और लाल दिखाई दे रहा है। पुल के नीचे एक दीवार है औस दीवार का रंग भी --

बैंक काक छत का रंग सफेद और गुलाबी दिखाई दे रहा है और बैंक की बोर्ड ब्लू है।